इस फोटो में हमें एक बोर्ड दिखाई दे रहा है।

चेयरे दिखाई दे रही है जोकि वाइट कलर की है।

एक बाइक रोड के बीच में चली हुई है इसके ऊपर एक वाइट टी_शर्ट पहना आदमी खड़ा है।

बनियान पहनी हुई है यह लो रेलिंग के ऊपर है।

इस फोटू में हमें एक ढाबा दिखाई दे रहा हैं।

पीछे लाल कलर का गेट दिखाई--